एक क्लब लिखा है एक पन्खा है लगा हुआ है और लग रहा है चारों तरफ इसमें लोग खड़े हैं स्थान एक औरत

पीछे बड़ा मैदान है चारों तरफ से एक पेड़ है पौधे सामने एक मैदान है उसमें मिट्टी डली हुई है बगल से एक जमो डली।

काला काली है सफेद है।

सामने कुछ मिट्टी डली धुब भी इसमे लगी हुई हैं ऊपर खुला आसमान है सामने इसमे पेटी लगी हुई --